मुझे इस फोटो में फैमिली का डेकोरेशन दिखाई दे रहा है।

रूम पर केर दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो पर एक झोला दिखाई दे रहा है।

एक चेयर दिखाई दे रही है।

एक काउंटर दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो पर एक तैयारी करते दि--

बहोत सारे ईंट दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो पर येलो टी शर्ट में एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो पर दीपक का नाम दिखाई दे रहा है।